परर एक तीन इंसान दिखाई दे रही है जो बिल्डिंग का काम कर रहे है यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है घर भी दिखाई दे रहे हैं।